टंक का पानी दिखाई दे रहा है और यहां पे तीन फलाने बैठे हुए भी है और उसके आस पास में बड़ी --

ये कोई हॉल है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है और टेबल बनी --

कालिका माता का मंदिर है वहां पर बहुत सारे भक्त जन आए हुए हैं दर्शन करने के लिए।

यहां पर बैठने की सुविधा भी है हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये बोहोत ही लम्बी नदी बता रहें हैं और --

यह एक कपड़े की दुकान है यहां पे वाइट पिंक ब्लू ग्रीन रेड --

मूवी देखने के लिए बैठे हुए हैं बहोत सारे लोग आए हुए हैं और रेड कलर की उनकी कुर्सियां है वी_आई_पी सीट वगैरा यहां पे।

ये एक फल फ्रूट की दुकान है यहां पर अनार संतरे सेब केले वगैरा यहां पे सब अंगूर --

की लीची वगैरा चि चिकू वगैरा यहां पे सब मिलते हैं बहोत अच्छी तरह के लाल लाल रंग के अनार दिख रहे हैं।

यह एक ब्राउ सुपर मार्केट है ये सिल्वर फिटनेस की दुकान है यहां पर --

ये एक पार्क है ये बहोत बड़ा पार्क यहां पे हरे-भरे पेड़ है बैठने की सुविधा भी है और यहां पे जिम --

के समाज मे रखे हुए बच्चे यहाँ पे जिम कर रहे हैं यहां पे ये लोग और यहां पे हरे हरे पत्ते पेड़ पौधे बहोत ही बड़ा पार्क बना रखा है।

बाटा की शूज मिलती है और उसके बाहर खूब सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और वहां से ई रिक्शा जा रहा है।